टेंपू के कांच पर सहज साउदी लिखा रहा हैं।

यहाँ से बहुत सारे लोग रोड क्रासिंग कर रहे है।

बीम के सामने बहुत सारी गिट्टियाँ पड़ी हुई है।

बैंक के ऊपर दो ऐसीयां लगी हुई हे।